आ ये एक खुली मैदान है जहां पे एक जे_सी_बी दिखाई दे रहा है।

इसके इर्द गिर्द कुछ मकाने भी दिखाई दे रही है।

वहां पे बहोत सारी चीज बेचते हैं। जैसे पेंसिल पेन बैग कॉपी बुक्स वगै--

एक शॉप जो है साइड में बंद है जिसको बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है।

और बहोत धूप है समर का मौसम लग रहा है गर्मी का मौसम है।

ये एक खुला मैदान है जिसमें बहुत अच्छा घास वास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

घास खा रहे हैं बहोत है इसमें और वहां धूप भी है।

और वहां सामने से एक दो घर भी दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी उठा रहा है और ये यहां से ये लोग कुछ बना रहे हैं।

रेड कलर के और उन छे बाल्टियों पे भी नाम लिखा हुआ है हिंदी से ही कुछ।

इनमें कुछ चीज से सामान बनाया हुआ है जैसे डमरू दिख रहा है।

टेबल पे मेनू रखा है टिशु होल्डर है।

के रेत में ये पेड़ पौधे घास वगैरा है और एक साइड से पानी भी है।

और नीचे कुछ टेबुल जैसा बना हुआ है जिसपे कुछ सामान रखा हुआ है ये रेड और ब्लैक कलर के बॉक्स हैं वहां से छोटे बॉक्स --

रस्सी बांधी हुई दो तीन दिख रही हैं मुझे। रेड कलर की है ब्राउन कलर की है व्हाइट कलर --

और वहां से भी एक बंदा आ रहा है जिसने चेक कलर की शर्ट पहनी है।

इसमें कालीन जो लगा हुआ है रेड कलर का है उस पे वाइट कलर के डॉट्स --

इस वाटरफॉल के बीच में भी कुछ ग्रीनरी दिख रही है जहां से वो पानी आ रहा है।

अ ये महिंद्रा शोरूम है जिसको बाहर बोर्ड चढ़ा हुआ है।

ग्रिल जैसा लगाया हुआ है और साइड में सीढ़ियां भी दिख रही है।